फोटो भी दिखाई दे रहै है तथा एक लड़का एक टेबल पर बैठ की जिम की मशीनो से जिम कर रहा है तथा इस--

इसमें हमें पांच छे इंसान दिखाई दे रहै है जिन्होने सफ़ेद कलर के कुछ अजीब तरीके के कपड़ा--